--जो की सफ़ेद और काले कलर की हैं सामने एक डिब्बे रखा हुआ है ऊपर भी कुछ डिब्बे ऊपर एक काले कलर की कलाकारी दी है।

सामने कुछ सिलेटी कलर की मछली रखी कुछ लाल कलर की कुछ वैसी सफेद और सिलेटी कलर की सब एक क्रेता पर रखी क्रेटों का रंग पीला --

ऑरेंज नीला लाल है और एक औरत कुछ सामान निकाल रही है कुछ पर्स मे से कुछ पैसे निकाल रही है पीछे पेड लगे सामने बहुत सारी गंदगी लगी हुई है।

एक पट्टी बनी हुई है उसपे कुछ लिख फूटी हुई है सामने चित्र बना हुआ है उस पे लाल कलर की पट --

दीवार का रंग काले कलर का है जमीन पर कुछ पत्ते डली हुई है और सफेद कलर का उसका फर्श है ऊपर भी काले कलर की दीवार है रक जग स बना हुआ है।